ये एक कपड़ो की दुकान में है इस दुकान में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है इस दुकान में अलग-अलग ढंग के कपड़े टंगे हुए है।

गेट है इस गेट के उपर तीन मंदिर --

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैंक है इस बैंक के बाहर बहुत सारे --

ये कोई बस स्टॉप है बस स्टॉप पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं कुर्सियों पर बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।